जो भी बहुत ही अच्छा साइकिल है। इसे रेंजर साइकिल कहते हैं और ऐ बॉयज के लिए होता है।

और भगवान देखने में बहुत ही सुन्दर और आकर्षित लग रहे हैं और लोगो की जनजमाहत भी बनी हूई है।

यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में दो तीन चेयर लगे हुए हैं और यह --

यह एक चर्च है। यहाँ पर तीन लड़के खड़े हो करके फोटो खिंचवा रहे हैं और ठंड का समय है इसीलिये --

ये दीपावली के दिन से नया खाता के रूप में काम किया जाता है।

यह एक महिंद्रा का शोरूम है। इस शोरूम में ट्रेक्टर मिलता है और यह शोरूम देखने में बोहोत ही आकर्षित लग रहा है।

के फादर की बातें सुन रहे हैं और फादर ने अपना सफेद कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

यह एक स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम देव बंद स्टेशन है। लेकिन स्टेशन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक --

लोग अपने बस में बैठने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें अपने घर जाना है। इसके लिए वो बस का सुविधा लेकर के जायेंगे।

दोनों ही लड़के शर्ट पैंट पहने हुए हैं। एक वाइट कलर का शर्ट पहना है और एक बैंगनी कलर का पैंट पहना हुआ है।

क्लास रूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और कोई भी टीचर नहीं दिखाई दे रहे हैं।

और ये लोग यहाँ पर प्रे कर रहे हैं। सभी लोग अच्छे से लाइन से खड़े वहाँ पे ह् --

आलू सब्जियों का राजा है और आलू हम लोग हर एक सब्जी में डालते है।